पीछे नदी है। बहुत सारे चट्टान हैं।

नाव बोट चल रहे हैं।

घूमने के लिए और बोट वाला भी इसमें बैठा हुआ है।

प्रमास केंद्र मुजफरपुर यहाँ पे एक कॉम्प --

अ यहाँ ग्रीन फार्म कर के बनाया गया है पूरा तरफ से बाउंड्री है घेरा हुआ।

अ यह एक तालाब का तस्वीर है। यह तालाब बहुत ही --

यहाँ पे इस मतलब क सींघाड़ा का भी पेड़ हो सकता है या --

जींस और टी-शर्ट पहनें हुए हैं बहुत बूढ़े हैं यंग है ।

वहाँ एक सीढ़ी बनाई गई है ताकि वहाँ अगर पानी कम रहे है तो उस सीढ़ी के जरिए लोग उतर के उसमें --

यह किसी पूजा के लिए पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे --

अ यह तस्वीर एक दुकान की हैं जहाँ पे विवो का सेल लगा हुआ है बहुत सारे।

दिख रहे हैं शोर्ट है लॉन्ग है सारे हैं सारे रंग-बिरंगे स्वेटर्स हैं कुर्ती भी दिख रहे हैं जो कि बिक रहे हैं यहाँ पे।